इस फोटो में एक लकड़ी की बहोत बड़ी अलमारी है।

इस फोटो में एक बहुत बड़ी लकड़ी की मेज पड़ी हुई है।

एक छोटा सा गमला भी रखा हुआ है।

यह फोटो एक बहोत बड़ी दुकान का है।

बहोत सारा सामान भी रखा हुआ है कुछ सामान कट्टो में भी रखा हुआ है।

बहुत सारे तेल की मशीनें भी लगी हुई है।

बहोत सारे छोटे छोटे पेड़ भी खड़े हुए --

और बहोत सारे सफेद रंग के मकान भी हैं।

एक मट्टी का वहा बहोत बड़ा पहाड़ भी है।

यह फोटो एक मकान का है।

इस फोटो में दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।